यहाँ दीवाले बनी हुई है लोहे की गेट लगे हुई है सिडिया बनी हुई है ऊपर जाने के लिए इक्क प्लस का साइन बना हुआ है पेड़ो पे हरे हरे पत्ते लगे हुए है फूल लगे हुए है आसमान में बादल लगे हुए---

यहाँ पे एक ड एक दूकान बनी हुई है जहा भारत स्टोर जनरल स्टोर बना हुआ है यहाँ बहुत सारे कुड़कुड़े ये सब टंगे हुए हैं शैम्पू टंगी हुई है बहुत सारी चीज़े टंगी हुई है।

ब्रेड रखे हुए है कोका कोला की ठंडा फ्रीजर रखी हुई है जिनमे बहुत सारे फ्रूटी जैसी रखें हुए हैं। शटर लगे हुए है शटर पर ताले लगे हुए है।

दरवाजा बना हुआ है। एक ई पानी का जार रखा हुआ है। टेबल रखी हुई है खिड़किया बनी हुई है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है जहा पे लि जिसके ऊपर लिखा हुआ है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ब--

में थिएटर बना हुआ है जहाँ सामने में वाइट पर्दा लगा हुआ है लाइटें लगी हुई है बहुत सारी सीलिंग पे बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है जिन पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ।